यहां का सड़क भी थोड़ा अच्छा है और यहां पर बहोत बड़ा बड़ा पेड़ भी हैं।

यहां पे एक औरत भी है जिसने साड़ी पहन रखा है और उन सबका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पर मुझे बेसिन और टैब भी दिख रहा है जो की पूरा पुरा लोहा से बना हुआ है।

ये फ्लोर है पूरा का पूरा टाइल्स से बनाया गया है जो कि येलो और ब्राउन कलर का है।

सामने बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ है जो कि बैंबू का पेड़ है वो भी ग्रीन कलर का।

यहां पर बहुत सारा सजावट किया गया है फूल से।

कलर का है जैसे ऑरेंज पिंक येलो और बहुत कुछ।

यहां पर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है जो कि ग्रीन कलर का है।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

इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है दूर में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

जहां पर बहुत सारे सामान का सेलिंग हो रहा है जैसे कि मिरर टॉयलेट्स और बहुत कुछ--

यहां पे कुछ बाइक्स और गाड़ी भी है जोकि अलग अलग कलर का है।

यहां पे मुझे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहा है यहां में फ्लावर्स भी है जो कि येलो कलर के है।

यहां पर मुझे तीन मूर्ति भी दिखाई दे रहा है जो पूरा पूरा गोल्डन कलर का है और उन सब का चेहरा भी क्लियर नहीं है।

मुझे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है।

में बहुत सारा ड्राइंग बनाया गया है।

यहां पर एक लाइट पोस्ट भी है यहां पर बहुत सारा वायर है।

यहां पर बहोत बड़ा बड़ा पेड़ भी है जो कि ग्रीन कलर का है।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

और वाल में सनिज भी लिखा हुआ है रेड कलर से।

किनारे में बहुत सारा पत्थर है जो कि बहुत बड़ा बड़ा है।

औ मुझे यहां पे एक बिल्डिंग भी दिख रहा है जो कि पूरा का पूरा सीमेंट और टीना से बना हुआ है और इसका टीना भी ब्लू कलर का है।

दुकान में बहुत सारा लाइट है जोकि जल रहा है मुझे यहां पर कुछ शेल्व्स भी दिखाई दे रहा है।

उसका ऊपर बहुत सारा फ्लावर पॉट्स रखा गया है।

उसके ऊपर एक बैनर है जिस पर कोथास कॉफी और बहुत कुछ लिखा हुआ है।